वो पेड़ दिख रहें हैं दिन का समय दिख रहा है आसमान दिख रहा है कुछ लोग खड़े दिख रहें हैं और रास्ते पर एक अ --

वो सामने ये लाल कलर की चेयर रखी है कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक दो इंसान वहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं।

वहां पे एक बोर्ड भी दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वहां एक इंसान दिख रहा है उसके हाथ में ड्रिल मशीन है और वो कुछ करता हुआ कार पे नजर आ रहा है वहां पे जा रहे दिन का समय दिख रहा।

स्टेज पे तीन लड़कीयां डांस करते हुए नजर आ रही है उन --

और एक बड़ा पेड़ दिख रहा है पेड़ के बाजू में एक सीमेंट का बना हुआ है बैठने के लिए और छोटे-छोटे पौधे भी दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है।

कमान दिख रही है महाविद्यालय का गेट दिख रहा है और ये रिक्शा है रिक्शा में एक औरत बैठी नजर आ रही है।

की दिख रही है रास्ता दिख रहा है सामने पे बड़ा सा पेड़ दिख रहा है और कुछ गाड़ियां और उधर भी रखी औ खड़ी हुई दिख रही है दो इंसान वहाँ से आते हुए नज़र आ रहे हैं वो कोई काली पीली जीप भी दिख रही है।